बोहोत सारी गाड़ियां चल रही है इसके आस-पास बोहोत सारे दुकान और बिल्डिंग नज़र आ रही है।

दीवाल के साइड में कुछ चेयर भी रहे गए हैं और एक कचड़ा का ढब्बा भी रखा गया है।

यह एक बिल्डिंग है जिस पे दो तीन खिड़कियां नज़र आ रही है इसपे एक बालकनी है ।

ये उ मूर्ति रखा गया है इसके आस-पास भी बहुत सारे मूर्ति है जो की --

बुद्ध भगवान का है और इसमें एक लाइट लगा हुआ है और बगल से कुछ दरवाज़े है।

खम्भे भी और है और इसके आस-पास पेड़-पौधे और है और दो-तीन बिल्डिंगे दिख रही है उसके बगल में एक बाइक भी खड़ी की गयी है।

यह एक फोटो में एक स्टेज --

यह एक नदी का पिक्चर है इसके आस-पास बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ।

इस के सामने एक भुसौड़ा दिख रहा है।